यह इमेज किसी ऑफिस की दिखाई दे रही है। यहां पर तीर शटर लगी हुई हैं जिनका कलर ग्रे है।

जिसमे की एक गोल बना हुआ है सामने की ओर डला हुआ है।

इस इमेज में एक खंडर किला दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का कार्टून का पोस्टर लगा हुआ है।

सभी कलर में रेड ग्रीन येलो ब्लू और इसमें व्हाइट कलर के छोटे-छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। कुछ लाइट लगी है।

दोनों का कलर वाइट है। दोनों के ऊपर ब्लू कलर के स्ट्रैप्स बनी हैं और गोल्डन कलर की स्ट्रैप्स बनी हैं।

यहां पर पॉमग्रैनेट बनाना लीची ऑरेंज फ्रूट्स रखे हैं।

एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने एक साइकिल खड़ी है।

यह इमेज के एक कंस्ट्रक्शन साइट की दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दो तीन व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उगी हुई है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की वेस्ट पहनी हुई है।

यह इमेज किसी किले या हवेली की दिखाई दे रही है इसके बहोत सारे छोटे-छोटे एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहे हैं।

ग्लास का डोर है। रेड कलर का इसका इंटीरियर है। चेक्स की टाइल्स (tiles) है।

यहां पर आस-पास कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। हरी घास उगी हुई है कुछ पत्थर रखे हुए हैं।